उसके ठीक ऊपर जंगल दिखाई दे रहा है।

में मुझे एक बहोत बड़ा पुल दिखाई दे रहा है।

और वो आदमी बैठा हुआ है।

और उसके सामने एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

और एक आदमी चलता हुवा नजर आ रहा हैं।

एक रास्ता नजर आ रहा है जिसमें लोग उस रास्ते पर चल रहे हैं।

दिख रहा है दुकान दिख रही है जिसमें बहोत सारी दवाइयां--

औरत भी दिखाई दे रही है।

रास्ता भी दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में मुझे एक--

सामने एक आदमी हैं जो वहाँ पर खड़ा हैं।

और उसके सामने बहोत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे --

योगा करने के उपकरण दिखाई--